क्यूंकी यह बोहत ही सुंदर दिख रहा है। ऐसा मानो ऐसा लग रहा है।

बहोत से लोग खड़े हुए हैं जोकि सर्वे करने आए हुए हैं कि मशीने सही तरीके से काम कर रही हैं।

यह फोटो आपको जो नजर आ रहा है बड़ा ही शानदार फोटो है जिसमें --

यह फोटो किसी गैरेज का फोटो है।

जिसमें कार को लटकाया जाता है उसका वेट नापा जाता है और गाड़ी ये भी सुधर रही है।

यहाँ पर आपको जो घर दिखाई दे रहा है वह आधा बना हुआ घर है।